बागल में घास पूस रखा हुआ है।

बोट का रंग सादे रंग का है उसको रस्सियों से बांध के रखा गया है।

यह एक जगह का चित्र है।

सामने इंटरनेशन पब्लिक स्कूल का गेट नजर आ रहा है इसमें पीले रंग की बस अन्दर जा रही है।

बहोत से सामाने सीलिंग से टांगी गई है जैसे कि फेविकोल ।

कुर्सियां भी नजर आ रही है एक टेबल भी है जो की लकड़ियों की मदद से बनी हुई है।

खिड़कियों पर जाली भी लगा हुआ है।

कुर्सी और टेबल पर कपड़ा उड़ाया गया है।

सामने एक पोस्टर पर पावर सॉल्यूशन डॉट कॉम एंटरप्राइज लिखा हुआ है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं लोग अपने हाथों पर बैग टांगे हुए हैं या पकड़े हुए हैं।

बहुत सारे जगहों पर पहाड़ का कटा हुआ चट्टान भी रखा हुआ है।

ट्रैफिक पुलिस भी नजर आ रहा है।

नीचे जमीन पर टाइल्स बिछाया गया है।

यह एक कोचिंग सेंटर का चित्र है जहां बेंच लकड़ियों की मदद से बनी हुई है।

नीचे जमीन पर मिट्टी है जिस पर घास उगी हुई है।